बहोत सारे पेड़ भी है बहोत सारे लम्बे-लम्बे पेड़ भी है सुंदर दिख रहे है।

एक रास्ता बगल में बहोत सारे फूल है बगल में पेड़-पौधे है और बगल में पहाड़ है बगल में मकान है।

बहुत सारा पेड़-पौधे हैं जंगल से भरा हूआ है| देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है| बहुत फूल-सा बहुत फूल भी है।

एक लंबा-सा टावर है और एक चारों बगल घर बगल में पेड़-पौधे हैं| नीचे छोटे-छोटे जंगल है।

वाला समान है पीछे भी एक पर्दा लगा हुआ है।

फूल का दुकान है आगे बहुत-बहुत बड़ा-बड़ा फूल लगा हुआ है धागे से टंगा हुआ है फूल को| पीछे दुकान मे आदमी कोंटर पर बैठा --

एक बोहोत हरा फील्ड है इसके के बोहोत बरा मकान है इधर बोहोत सारा आदमी खरे है फील्ड है।

ऐ खिलौने वाला चिड़िया है पीछे बहोत बड़ा-बड़ा डिब्बा है बहोत सुन्दर दिख रहा है दुकान।

और उधर एगो रखा है लाइट आ रहा है दुकान में। प्याज है धनिया है एक डिब्बा रखा हुआ है।

एक दुकान के आगे बहोत सारा बाइक लगा हुआ है टाइल्स लगा हुआ है साइकिल लगा हुआ है पोस्टर लगा हुआ है उसके आप आगे रोड है।